उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। सीलिंग पर एक पंखा भी लगा है।

शीशे के छोटे-छोटे रैक दीवार पर बने हुए हैं उसपर बहुत सारे क्रीम --

सामने कई सारे छोटे व बड़े पेड़ भी हैं। एक सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है।

इस पिक्टर में कई सारे सब्जी के दुकाने दिखाई दे रही है। कच्ची सड़क है कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिलें हैं।

माइकें लगी हुई हैं। कई सारे लोग खड़े हैं। एक आदमी माइक में कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है।

मकान के नीचे एक हॉस्पिटल भी है। उसके ऊपर नवजीवन हॉस्पिटल लिखा हुआ है। बाहर शीशे का गेट लगा है। एक आदमी बाहर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक हरे रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके बाहर लोहे का गेट लगा हुआ है अंदर कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर हरे रंग का मैंट बिछा हुआ है। सामने एक औटो रिक्शा और इ-रिक्शा खड़ा है। इसके पास एक आदमी है।

लोहे का बड़ा गेट लगा हुआ है। वह काले रंग का है। रात का समय है। एक बड़ा सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है।